यहाँ पे हम्म अ कोई सरकारी ऑफिस है जहाँ पे बब गाड़ी ही गाड़ी दिख रहा है। अच्छा-सा लग रहा है और ब्लैक पीला कलर का बिल्डिंग पेंट है ।